जिनके बीच दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि हंस रहे हैं।

उसके पीछे लाइटिंग भी दिखाई दे रही है जहां पर रेड और ब्लू कलर की लाइटे लगी हुई है।

साइड में एक शॉप नजर आ रही है जो की कपड़ों की है जिस पर मिरर पर कुछ कपड़े लटके हुए हैं।

यह रोड पर लिया गया फोटो है जिसमे सामने कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें से कुछ हैंड वॉश की पैकेट है कुछ यहां पर खाने की चीजे हैं।

इस फोटो में सामने बहुत सारे कपड़े लटके हुए है।

नीचे एक शिशा भी दिखाई दे रहा है और यहां पर एक थैला भी लटका हुआ है।

वहां पर दो से तीन व्यक्ति भी उन पर बैठे हुए हैं।

जो कि आज आगे की ओर जा रहा है और पीछे इसमें रास्ते में कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर दो लोहे की कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक समुद्र दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ है और साइड में कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर कुछ खंभे भी दिखाई दे रहीं है और यहां पर एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने दो लड़के दिखाई दे रहे हैं जिनमें से एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है।

उसके पीछे भी छोटे छोटे बॉक्सो में बहोत समान दिखाई दे रहा है।

यहां पर इ कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं। पीछे ए पीछे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रे --

इसमें सामने दीवार पर कुछ फोटो लगे हुए हैं जिसमें से एक पिज़्ज़ा का फोटो है।

उसके पीछे कुछ छोटे और बड़े भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने तीन चेयर दिखाई दे रही है जिन पर दो कलर हो रहे हैं।

पीछे एक छोटा सा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन पर बहुत सारा घास दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने दीवार पर एक गीजर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक ब्लैक कलर का वाश बेसन भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने बहोत सारी साइकिलें खड़ी हुई--

और ट्रेन के नीचे पत्थर भी दिखाई दे रहे है।